एक रूम है रूम के पास एक कुर्सी है कुर्सी के ऊपर एक पंखा है पंखे के पास एक पर्दा है पर्दे के ऊपर एक लाइट है।

जहां तार है तार के पास में पत्थर है पत्थर के पास में पेड़ है।

एक है दुकान में शैम्पू है शैम्पू के पास एक निपी है।

के पास में एक पंखा है पंखे के पास एक लाइट है।

एक मशीन है मशीन के पास एक लड़का ठहरा है और वहां पे वो जिम कर रहा है जिम के पास एक लाइट है।

लाइट के पास में एक पेड़ है पेड़ के पास में एक लड़की है लड़की के पास में एक ए_सी है।

और मंदिर के ऊपर लाइट जल रही है लाइट के पास एक खंभा है।

घर के पास एक तुलसी है तुलसी के पास लाइटें लगी है लाईट के पास एक घर है।

एक सोफा है सोफे के पास में दो सोफे हैं दो सोफे के पास में एक फूल है फूलों के पास में पायदान है।